जिसमें ऊंचाई वो वजन नापा जाता है।

एक ट्रक दिखाई पड़ता है जो नीले रंग का है।

पर राज ट्रे ट्रेलर लिखा हुआ है इसके पहिए नहीं है।

एक बच्चा इसके नीचे झांक रहा है।

टेबल के ऊपर लैंप लगे हुए हैं।

दीवार पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं दीवार सलेटी रंग की है।

साइड में लाल रिबन लगाए गए हैं।

इसमें कोई स्टैंड लगा हुआ है।

और पेड़ सूखा हुआ लगा हुआ है सामने एक घर भी है।

कुछ टावर सीधे जा रहे हैं कुछ टेढ़े जा रहे हैं।

जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है।

बराबर में मरम्मत का सामान रखा गया है।

सा आ यह चित्र एक मोल का है।

इसकी सफेद रंग की दीवार है नीले रंग के शीशे लगे हुए हैं।

सड़क के किनारे छोटी-छोटी हरी घास लगी हुई है।

बाहर से देख रहा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है उसका थोड़ा सा सिर सफेद दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारे लाइन में--

सामने ही एक छोटा सा गेट है और बोर्ड लगा हुआ है।

एक आदमी बाइक में हवा भर रहा है।

इस चित्र में बहुत सी पेटियां पड़ी हैं।

ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

बाग में पत्थरों की पगंडी बनाई गई है।

और इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं।

कुछ ने अपने हाथ पीछे किए हुए हैं।

पेंट पहनी है पीछे बहुत से ट्रक खड़े हैं।

इस पे फ्रेंड्स मोटर्स गैरेज लिखा हुआ है।

और नीचे फर्श ग्रे कलर का है चिकना है।

कुछ लेडीज खड़ी हैं एक ने--

सब उल्टी अवस्था में देख रहे हैं।

उसमें चेस का डिजाइन बना हुआ है।

और यहां पर बीच में एक पगंडी भी जा रही है।